जो उजले कलर का खिड़की है।

बहुत सारे आदमी भी खड़े हैं।

पीले कलर का शर्ट पहना हुआ है।

पेड़ भी लगा हुआ है जो हरे कलर का है।

जींस पहना हुआ है बगल में बहुत सारे पेड़ है।

बगल में दो आदमी हैं।

एक आदमी ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

लाल कलर का डब्बा है।

एक उजला कलर का डब्बा है।

यह एक रूम का दृश्य है।

यह एक वाटर पार्क का दृश्य है।

ये दिन का समय लगता है।

एक आदमी बगल में दिख रहा है।

बहुत सारे घड़ी टंगे हुए हैं।

यह एक स्टेज का दृश्य है।

कारपेट भी बिछाया हुआ है।

ये लाल कलर का कारपेट है।

लाल कलर का है।

एक मोटरसाइकिल भी लगाया हुआ है जो ब्लू कलर का मोटरसाइकिल है।

एक उजला और एक हरा कलर का है।

में एक बास लगाया हुआ है।

एक रेलिंग भी लगाया हुआ है।

जहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

जो काले कलर का कुर्सी है।

पंखा भी लगा हुआ है जो नहीं चल रहा है पंखा।

जो उजले कलर का लाइट है।

रूम के अंदर बहुत सारे तस्वीर लगाए हुई हैं।

और पंखे भी हैं जो उजले कलर का पंखा है।

अलग अलग कपड़ा पहना है।

बाहर में एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

काउंटर भी है जो उजला और भूरा कलर का हैं।

यह दिन का समय लगता है।

एक बोर्ड लगा हुआ है जो ब्लू कलर का बोर्ड है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

नीचे में एक आदमी खड़ा हुआ है।

दीवाल का रंग है उजाला और ब्लू कलर ।

एक ड्रम भी है जो ब्लू कलर का ड्रम है।

ऊपर में करकट लगाया हुआ है।

बगल में एक बाउंड्री मारा हुआ है जो लकड़ी का है।

यह एक ब्यूटी पार्लर का दुकान है।

एक गेट लगाया हुआ है जो काला कलर का है।

एक करकट दिख रहा है।

जो बेड के छपे हुए हैं और सोफे के छपे हुए हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है।

देवाल का रंग है पिंक कलर ।

एक काउंटर भी लगाया हुआ है।

जो अलग अलग कलर के हैं।

जो तिरपाल लगाया हुआ है।

बहुत सारे स्टीकर लगे हुए है।

यहां पे बहुत सारी मोटरसाइकिल और स्कूटी ना है।

बहुत सारे आदमी भी हैं।

एक आदमी लूना पे बैठा हुआ है जो चला रहा है।